यहाँ पे मेला लगा हुआ है काफी सारे लोग खड़े हैं देख रहे हैं काफी तरह-तरह के कलर कलर के कपड़े-उपड़े पहने हुए है उधर में मकान है।

सिक्कड़ भी है बाउंड्री तरफ है उधर में एक रूम है एक बाइक लगा हुआ है।

को बच्चा सा उसमें अंदर पता नहीं पुलिस है कि नहीं है बाहर में खिड़की --

एक कॉलेज है बहोत बड़ा कॉलेज है पार्क है फील्ड है।

एक कॉलेज है यहाँ पे काफी सारे लड़के हैं लड़कियाँ भी खड़ी हैं उधर में भी कॉलेज दिख रहा है बहुत सारा पेड़ है।

बाहर में जो है हरा रंग का चटाई बिछाया हुआ इधर में काफी सारे लोग हैं बाहर में अंदर में भी काफी सारे लोग देखने को मिल--

बच्चा स्लोपिंग सीढ़ी है अन्दर जाने पे मिला टेबल है कुर्सी है इधर में बगल में उ जो है --

खूब सुंदर जो है पानी है नीला कलर का पानी देखने को मिल सकता है बाहर में खूब--

अल्वेस्टर है पीछे में हरियाली दिख रहा हमको खूब सुंदर हरा रंग का जो पेड़ पौधे हैं।